आप देख सकते हैं कि यह एक अपार्टमेंट के बाहर के बेसमेंट है।

अम रंग के हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहें हैं एक ही किताब में पांच तोते लाइन में बैठे हैं।

जैसे कि आप देख सकते है ये एक दवाखाना है जहां पर कुछ लोग बाहर बैठे हैं और--

जैसा कि आप देख सकते हैं यह एक वृंदा डेअरी एंड स्वीट मार्ट है यहां पर दूध की--

ब्लेजर और कोर्ट मिलते हैं और यह बहोत ही बड़ी दुकान है।

जा रहे हैं बहुत सी भीड़ इस समय लगी हुई है।

मछलियों से भरा हुआ है और दो ओ ओ--

अ फील्डिंग कर रहें हैं। इस टाइम यहां पर खेल--

इसकी बिल्डिंग नीली और क्रीम कलर की है जो देख--

और आसपास बहुत सारे पेड़ भी है।

मैं बहुत प्रकार के कपड़े देखने को--

वर्कर काम कर रहा है और रेस्टूडेंट की सेल्फ पे ब्रेड --

दीवाल पे दो पिक्चरें लटकी हुई हैं।